रखा है जिसमें हरे और व्हाइट कलर की चटनी दिखाई दे रही है और एक मिर्ची भी दिखाई --

पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है। एक साइकिल भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे |